यह एक बिरयानी वाले की दुकान है।

और पीछे एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ लाइटे भीं लगी हुई है और टेंट पर कुछ गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

और पीछे बहुत सारे पेड़ भी हैं।

और दो कुर्सी भी दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में एक प्लास्टिक की प्लेट रखी हुई है।

जोड़ में बहुत साफ पानी पड़ा हुआ है।

और बहुत से पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।